कवाली में एक एक खाने बने हुए है जिसमे बोहोत सारा सामान रखा हुआ है।

कान के पीछे दरवाज़े पे लाल रंग के परदे लगे हुए है।

जहा एक बड़ी सी गार्डन की कारपेट टंगी हुई है।

ये एक हनुमान मंदिर है मंदिर में एक केले का पेड़ लगा है जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं।

कमरे के अन्दर हनुमान जी की मूर्ति है।

दिवार पे ऑरेंज कलर की टाइल लगी हुई है।

एक बूढी ओरत सामने से गुजर रही है।

निचे के रैक में शैम्पू बॉडीवॉश रखा हुआ है ।

की एक एस_बी_आई का ए_टी_एम है ए_टी_एम के बहार एस_बी_आई का बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक पेट शॉप है जहा पे कुत्तो के खाने का सामान रखा है निचे उनकी दवाई है।

निचे के थाने में उनकी रखे हुए है।

ये बैंक ऑफ़ बड़ोदा का ऑफिस है जहा पे आधार का काम भी किया जाता है।

दुकानों के आगे कांच का गेट लगा हुआ है।

ये एक टायर की शॉप है जिसका नाम आर_के ब्रदर्स टायर है।

दुकान दो मज़िला है दुकान के बाहर--

बड़े बड़े बोर्ड में आर _के बोर्थेर्स टाइल लिखा हुआ है।

ये एक किताब की दुकान है दुकान के सामने टेबल पे किताबों को एक के ऊपर रखा गया है।

सामने खाने की टेबल सजी हुई है जिसके ऊपर खाना रखा गया है।

एक छोटा सा प्लास्तिक का डिब्बा रखा हुआ है।

खिडकियों में पर्पल कलर के पर्दे टंगे है एक ए_सी लगा हुआ है छत पे पंखे है।

एक पोस्टर लगा है पोस्टर पे एक लड़की बनी हुई है।

खड़े होने के लिए बोहोत बड़ा मैदान है।

उन्होंने सत सर पे काली पट्टी पहनी है और पिंक जैकेट पेहना है।

ये एक सिनेमा हॉल है। सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी है। कांच का दरवाजा है।

जट फाइटर बना हुआ है जो की नकली है।

थोड़ी ही दूर पे हरे रंग के बोर लगे है आस पास हरे भरे पेड़ है।

सामने एक छोटा सा ऑफिस है ऑफिस के ऊपर लोहे के पिलर लगे हुए है।

जिससे बिजली की तार जा रही है ऑफिस के सामने एक कार खड़ी है।